तथा ये व्यवस्थित कार्य प्रणाली के द्वारा सरकार के द्वारा किये गए व्यवस्थित प्रणाली हैं।

तथा यह ये सड़क का सामूहिक चित्र है जिसपर लोग आवक जावक की क्रिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वहाँ पे खड़े हुए लोग भी वहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली के आधार पर व्यवस्थित खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये व्यवस्था के आधार पर किये जाने वाली समुचित प्रणाली है। जिसमें वहाँ के लोग वहाँ की --

ये सरकारी कार्यालय होने की वजह से बहार बड़ी साफ-सफाई का प्रतिबन्घ रखा गया है।

यह एक जगह का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है जहां पे दो पहियां वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज कलर की पल्सर बाइक स्कूटी --

यह एक डाक खाने का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमे पुराने ज़माने से सम्बंधित डाक चिट्ठी वेगरा डाले जाते थे पहले ज़माने में --

छोटी सी वेवस्था के आधार पर किया गया एक वेवस्थापिक निर्माण हैं जोकि एक वेवस्था के आधार पे दिखाई दे रहा है।

तथा ये व्यवस्थित प्रणाली के रूप में व्यवस्थित किये हुए एक दुकान की व्यवस्था है जोकि छोटे रूप में क्रय विक्रय का संचालन कर रही है।

यह एक सड़क का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमे आवक जावक की क्रिया का संचालन किया जाता है।

ए जाति का सम अ सामान दिखाई दे रहा है तथा इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधों से संबंधित --

वाहनों का तथा वेक्तियो का आवक जावक लगा रहता है तथा वहाँ का एक सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें --

यह एक शादी के मंडप का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है तथा इसके चार पिलर को बोहोत ही सुन्दर रूप से सजाया गया है।

यह छोटी सी नदी में की जाने वाली बोटिंग है।

निकलने के लिए रास्ता प्रदान कर रहा है तथा ऊपर पहाड़ो से गिरता हुआ पानी अपनी सुन्दर छबि के रूप में बोहुत सुन्दर दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है।

यह बहुत बड़े बड़े समुन्द्रो से आता हुआ पानी पहाड़ो के दिशाओ में निकलता हुआ अपनी जगह बनाता हुआ वहाँ व्यवस्थित जगह बना रहा है।

डॉक्टरी पद्धति के अनुसार एक जानवर की जान को बचाने की पूर्ण सम्पूर्ण कोशिश की जा रही है जो मनुष्य आधार --

जो बसे स्थानों के साथ-साथ वहाँ पे हैं वहाँ पे गदंगी के वातावरन को भी दिखाई दे रही हैं सामूहिक चित्रों के द्वारा --

उपजाऊ जमीं बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रही है जिसपे हरी-हरी खेती की उपजाऊ बीज उग चुके है तथा ये उपजाऊ जमीं --

तथा इसके ऊपर पड़ने वाली सूर्य की किरण इस सुन्दर उपजाऊ जमीन को और भी सुन्दर रूप तथा आकृति के रूप में दिखा रही है जो एक व्यवस्थित प्रणाली है।